बडीसी बिल्डिंग है यहाँ पे क्लब जैसा दिख रह है वॉचमन भी है। प्लेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तब सब जगह से--

एक कॅफे आहे. इथे अ को चाय प्याला दोन कप चाय आहेत आणि शुगर र्फ्री कॉफी दिसत आहे.

स्मार्ट सायकल खूप साऱ्या वेग वेगळ्या प्रकारच्या सायकली सायकल्स दिसत आहे.

ट्रॅक्टर्स टायर आहे अह्म्म्म आयशर टायर्स आहे फुल स्मार्ट टायर्स आहे.

एक मराठी जेवण आहे अ भात भाजी कढी कांदा डाळ वरण भात अ सर्व दिसत आहे.

''हि पण एक बिल्डिंग आहे. खाली पार्किंग साठी आहे सेंटिंग्स लावलेलीज आहे. खड्ड्यांचा काचेचा असा भिंत दिसत आहे बाईक आहे सिमेंट विटा असं--''

चोथा माला चालू आहे है बिल्डीग्स बिल्डीग्स चालूच आहे बनन.

मैरिज हॉल दिख रहा है चेयर है चेयर्स है स्लिप स्लीपर बॉय --

टी स्टोल की दुकान है कॉफी ची ब्रोकरच है हैंडवाश भी है कप्स है और नाश्ते के लिये भी है।

कोणसा तरी स्टेशन दिसत आहे स्कूटी पार्क केलेली आहे बाइक पार्क केलेली आहे तिकडून ड्रम पण आहे दोन एक काका एक मुलगा दिसत आहे.

यह स्कूल के बच्चे खेल रहे है गार्डन पे और यहा खेल खो-खो खेल है अं खो-खो खेल दिख रहा कोई लड़किया खेल दे --